ये एक मछली की दुकान है और यहाँ एक औरत बैठी हुई है। जो कि मछली बेच रही है और यहाँ छोटी बड़ी सभी तरह की मछली है।

ये टेम्पू बैटरी के है। सामने एक बिल्डिग है। जिसका रंग हरा है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसपर सीयूबि ए.टी.एम. लिखा हुआ है और इसका दरवाजा शीशे का है।

काफी सारे लोग जा रहे है। सामने काफी सारी गाड़ी खड़ी हुई है। ऊपर ऊंची बिल्डिंग है।

ये एक घर है और इसके बहोत बड़ा गेट लगा हुआ है।

सामने एक एरोप्लेन खड़ा है और यहाँ एक खम्बा सीमेंट का खड़ा दिखाई दे रहा है।